काफी खूबसूरती से डेकोरेट कर दिया गया है और कपड़ों ओपड़ो से--

एक कारखाना दिखाया गया है जो कि काफी बड़ा सड़ा है और लोहे के बहुत सारे सामान रखे गए हैं।

एक रूम टाइप का दिखाया जा रहा है जिस पर बैड है बैड पर तकिए वकीए रखे गए हैं छोटा सा एक --

एक ऑफिस टाइप का दिखाया जा रहा है जिसमें टेबल है चेयर है दो तीन लड़के वडके बैठे हैं।

उनमें ब्राउन कलर भी कर दिए गए हैं एक टेबल रखा हुआ टेबल पर एक--

उम्म गड्ढा टाइप का बना दिया गया ऊपर पे पूरा हो रहा है तार वार है।

बना-बना कर के रख दी गई है उनमें कुछ कारपेट उर्पेट बिछा दी गई है दिवार पर बहुत सारे --

एक छोटा सा सॉप दिखाया गया है जिसके बाहर पर बोर्ड है बॉर्डर पर लिख दिया गया है बंसल इलेक्ट्रॉनिक एंड ट्रेडिंग --

राउंड टाइप का बना दिया गया है उस पर बाहर पर एक बहुत बड़ा सा पेड़ है चारों ओर बाउंड्री है।

वो झंडे ऊपर मे लटका दिये गये है अंदर मे बहोत सारी गाड़ी वाडी रखी गईं--

समान ओमान रखे गए बाहर पर और भी बहोत सारी बैनर वैनर लगा दिए गए--

बड़ा सा टेबल रख दिया गया है जिन्हें रेड कलर के दे दिए गए हैं और--

पे रेड कलर का दिए गए है स्टेज टाइप के।

मूर्ति है सरस्वती जी है लक्ष्मी जी है गणेश जी हैं।

जी जी ये साइड में कोला बु भी रख दिया गया है और उन सभी को--

पेड़ वेड दिखाई जा रही है कुछ मिट्टी के रास्ते जिनमें छोटे छोटे पत्थर वत्थर है।

और एक कार है जिन्हें गाड़ी है जो उठाकर के लेकर के जा रहा है वो ब्लैक कलर का वाइट कलर का कार है बगल में--

कुछ बहुत सारे पेंटिंग वेंटिंग वो चिपका दिए गए हैं दो तीन स्टूडेंट स्टूडेंट खड़ी हैं।

एक मॉल टाइप का दिखाया जा रहा है जिसके बाहर पर बोर्ड है बोर्ड पर लिख दिया गया है आर्ट मॉल गिफ्ट आइटम होम डेकोरेटर हैंडीक्राफ्ट एंड टॉप --